यह एक बहुत बड़ा मैदान है।

बस है ट्रक है कार है महिंद्रा मैक्स है।

फरश पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है।

बराबर में एक शटर वाला घर है जिसके छज्जे में एक कुंडा है।

यह एक ब्यूटी पार्लर है जहां पर एक लड़की बैठी हुई है।

और जुड़े में चिमटी लगी हुई हैं।

कुछ बाल खुले हैं और कमर पर काला कपड़ा पड़ा हुआ है।

बहुत अच्छी अच्छी सजावट की चीजे रखी हुई है बहोत अच्छी लाइट लगी हुई हैं।

एक साइकल है गत्ता है और एक हौदी बनी हुई है।

मस्जिद में एक पिलर के पास एक आदमी बैठा हुआ है।

और पिलर पर गैलरी छपी हुई है जिसमें ग्रिल लगी हुई हैं।

और पीछे वॉलीबॉल का जाल है बहुत से खंभे हैं।

पीछे कुछ बहोत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है।

कमरे के अंदर टाइल्स लगी हुई हैं।

ड्रेसिंग है और नीचे बहुत अच्छी टाइल्स लगी बिछी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है।

बिजली का तार है और पॉलोथीन के अंदर कुछ सामान है।

यह एक चाय की दुकान है जिसमें बहोत सारा सामान टंगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा मंदिर सा है।

और दरवाजे फूलों से सजे हुए हैं।

यह एक बैंड की दुकान है जिस पर दुकान का नाम लिखा हुआ है।